और बाहर एक दीवार है जिसपर नेशनल इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है।

और गुंबज के नीचे हरे कलर की अ सजावट की गई है |

ये अंगूर गुच्छों अ के रूप में पेपर पर रखे हुए है।

जिसके राइट साइड छोटे-छोटे फव्वारे चल रहे हैं ।

और इसके साइड में एक लेडिस और एक बच्चा भी हमे दिखाई दे रहा है |

नीचे कुछ झाड़ियां भी पड़ी है।

ये दो फाटक हैं और नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है ।